और यहाँ बहुत बड़ा लाइट लगाया गया है यह डी.जे. गाड़ी में बहुत से चोंगे भी बांधे गए हैं यह लाउडस्पीकर से आवाज़ दूर तक जाती है ।.

यह एक शहर है यह शहर बहुत बड़ा है यह शहर रात में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।

यह एक मॉल है यह मॉल का नाम स्टाइलिश बाज़ार मॉल है यह मॉल में --